और उसी प्रकार यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया है यहाँ पे बहुत सारे यात्रीगण आते हैं और चढ़ते भी हैं दूसरी जगह जाने के लिए।

भगवान को अर्पित करना चाहिए भेंट करना चाहिए क्योंकि भगवान फूल को लेके बहुत ही फूल की माला को लेके बहुत ही आनंद होते है और उनका मनोकामना भी पुर्ण होता है ।

और साथ ही साथ इस पानी का उपयोग किसानों के द्वारा उनके खेतो में सिंचाई के रूप में की जाती है क्योंकि सिंचाई करने से किसानों का जो फसल है वो जीवित रह --

और ये घर बहुत ही जल्दी-जल्दी बनाया जा रहा है। ऐसा पर्तित हो रहा है कि पहले इसमें पिलर देके ढाल दिया गया है। फिर बाद में इस इसमें इंटा देके इससे प्लास्टर किया जा रहा है।